चेयर्स का कलर मेहरून है और उसके हैंडल्स पर ब्लैक कलर किया हुआ है ।

सामने रेड कलर का एक मशीन रखा हुआ है जिस पे वाइट कलर का बोर्ड है।

हमारे सामने दो लोग एक बेंच पर बैठे हैं एक इंसान ने वाइट शर्ट और ब्लू फुल पैंट पहनी है --

जैसा की मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अभी दिन का समय है और--

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं हमारे सामने एक टेबल है।

उसके पीछे एक इंसान खड़ा है जिसने ऑरेंज कलर का कुर्ता और ब्‍लैक जीन्‍स पहनी है।

लेफ्ट साइड पे एक कप्बर्ड हैं जिसका कलर ब्राउन हैं कप्बर्ड --

सामने में कुछ बलून्स भी लगे हुए हैं जिसका कलर व्हाइट और ब्लू है।

जैसा की मैं यहां देख पा रहा हूं अभी दिन का समय है।

जैसा की मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अभी दिन का समय है --

राइट साइड में एक कम्प्यूटर है जिसका कलर ब्लैक है सामने में एक स्टूल रखी हुई है जिसका कलर ब्राउन है--

जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं अभी दिन का समय है।

जैसा की मैं यहां देख पा रहा हूं हमारे सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग पर येलो कलर किया गया है ।

सामने रेड और वाइट कलर के डेस्क बने हुए हैं उसके आगे में एक इंसान व्हाइट कलर का टी_शर्ट पहने बैठा है।